जैसा कि आप देख सकते हैं एक व्हाइट कलर का--

जो कि बहोत ही कमाल का क्राइटेरिया डिजाइन कर रहा है और ये बहोत ही बड़ा है।

और कुछ भगवान जी बहोत सुन्दर सुन्दर लग रहे हैं यहां पर चांदी की बर्तन--

इसमें बहोत सारे लोग देख भी रहे हैं कि कितने लोग वहां पर खड़े हैं और एक ब्रिज बना हुआ है।

जहां पर कुछ लोग बैठे हुए हैं और कुछ लोग काम कर रहे हैं।